पेड़-पौधे हैं। ग्राउंड एरिया है और क्या ग्रीनरी है। चारों तरफ और ये किसी जगह का एंट्रेंस है क्योंकि आगे में ही मैन गेट हैं।

यह एक मस्जिद का एरिया लग रहा है जहां पे आप नमाज पढ़ सकते हो दुआएं मांग सकते --

और ये हमारा कमल सा दाता जो मजार है उनका एंट्रेंस है। यहां से आप अंदर जाओगे और यहां पे उनका मेंन गेट है जहां से आप अंदर जा सकते हो और खुदा से इबादत कर सकते हो।